बहोत सुंदर चर्च बनी हुई है और रास्ता जा रहा है आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं और कच्ची मिट्टी का रास्ता है।

और यहां पे बहोत अच्छे अच्छे गिफ्ट रखे हुए हैं बच्चों के लिए--

सीढ़िया ऊपर को जा रही हैं ऊपर बादल छाए हुए हैं और एक आदमी ऊपर को चढ़ रहा है।

साफ सफाई लग रही है दुकान में बहोत ही--

यहां पे तीन काउंटर बनाए हुए हैं अलग अलग तरह के नंबर --

सफेद रंग की हैं कुछ गाड़ियां काले रंग की हैं और पार्किंग पे--

और सामने दो तस्वीरें लगी हुई है।

यहां पे किताबों के साथ सभी लोग किताबें देख रहें हैं और बहुत बड़ी दुकान है सभी ज तरह की यहां पे किताबें मिल जाती हैं।

हॉल तरीके से बना के रखा हुआ है जिस पे अलग अलग सेपरेट चेयर्स लगी हुई हैं और काम करने के लिए काउंटर बने हुए--

बहोत ही अच्छी लग रही है सुंदर लग रही है पालकी--